आस पास हरियाली नजर आ रही--

इस तस्वीर में कई सारी ट्रक कतार में लगी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे टोल टैक्स की तस्वीर है ये।

यह तस्वीर किसी वी_आई_पी हाउस की लग रही है।

एक दीवार पर सफ़ेद कलर का पर्चा चिपका हुआ है।

ये तस्वीर भारतीय डाक के ए_टी_एम की है जो ट्वेंटी फोर ऑवर खुला रहता है।

सर बेकरी के बाहर सीढ़ियां बनी हुई हैं अंदर जाने के लिए।

और जी_एस_टी एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट रिबेट है।

मॉल के अंदर नीले कलर का एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर पुल लिखा हुआ है।

एक औरत हरी कलर की और गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह तस्वीर किसी पार्टी की है।